पेड़ और पौधे ही नज़र आ रहा है।

यहाँ एक लिखा हुआ है अमूल द स्टेट ऑफ इंडिया यहाँ अमूल का कोई ऑफिस है या फिर अमूल का कोई प्रोडक्ट यहाँ मिलता होगा।

एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जो पूरा पेड़-पौधे से भरपूर है।

रोड के किनारे-किनारे बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं फल फूल के गुपचुप के और एक दो ऑटो भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक बाइक शोरूम है।

होंडा कंपनी का गाड़ी है बहुत सारे यहाँ पे बाइक्स रखे गए हैं चमचमाती न्यू ब्रांड न्यू बाइक और बहुत ही सुंदर --

लगा होगा जिओ एयरटेल वोडाफ़ोन आइडीअ --

तो जिनका तबीयत खराब होता है वे सभी हॉस्पिटल अपना इलाज कराने के लिए आते हैं।

एक बड़ा सा तिरछुल भी नजर आ रहा है।

यह भवन के छत से कुछ रस्सियां नीचे की ओर लटकी हुई है।

कॉफी का मजा ले सकते हैं।

यहाँ ऊपर में लिखा है सूरजपुर रोड यहाँ रेलवे स्टेशन या फिर --

शर्ट पेंट जूता पहने हुए।

और बहुत सुंदर गार्डन बनाया गया है।

और सामने बहुत सारे स्टूडेंट मार्क्स लगा कर के --

और अपने दुकान में ही गणेश भगवान सरस्वती माता लक्ष्मी माता इन सभी का फोटो पे हार चढ़ा करके अगरबत्ती जला कर के पूजा कर रहा है।

और दुकान में बहुत सारे सामान रखे हुए है।